के छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं।

फ्रिज के पास इधर एक बेंच पड़ा है लकड़ी का और बीच में कुछ कुर्सियां पड़ी है बेंच पड़ी है सफेद कलर की--

सामने कोने में एक मंदिर टाइप कुछ बना हुआ है उसके अंदर तस्वीर रखी हुई है एक तस्वीर जीप कइ हुई है।

सामने बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है दो तीन मंजिलों सी है।

इस फोटो के अंदर बहोंत ही बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं ग्राउंड के चारों दीवार बनी हुई है।

फर्नीचर लगे हुए बेंच लगी हुई हैं कुर्सियां बड़ी है।

दीवारों के पास पास में बहोत सारे सामान पड़े हैं।

यहां पर इस फोटो के अंदर सामने एक दुकान है दुकान के अंदर की साइड बहुत सारे लोग खड़े हैं।